ऐसा लगता है मानो एक कॉम्पटीशन चल रहा हो और जो भी जीतेगा उसको ये गिफ्ट मे दिया जाएगा। यहाँ पर बहोत से गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सी दुकाने हैं दुकानों में बहुत से ग्राहक भी खड़े हुए हैं और दुकानदार उन्हें बेच रहे हैं।

--ओर वह कुछ दिख रहा है बैंक के अंदर एक इंसान दिखाई दे रहा है।

यह एक कितना सुन्दर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है यहा पर कुछ भगवान की टूटी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है।